जहाँ पे अच्छी सारी दृश्य होती है वहाँ पे खड़े होकर हम फोटो खींचवा सक --

बाइक हमारे जो सामने दृश्य है वो बाइक का शो बाइक का शोरूम है जहाँ पे हमें अ --

आ जिसमें मजदूर टाइल्स लगाते हुए नजर आ रहे है जहां पे फ्लोर टाइल्स का काम किया जा रहा है।